आसमान का छाया नदी में दिखाई दे रहा है | बहुत मस्त लग रहा है देखने मे |

बैलून है रोड गया है रोड पे साइकिल चल रही है रोड के बगल में दुकान है।

बुहत मस्त दिखाई दे रहा हैं।

आदमी हैं ड्रिंक कर रहा है। बहुत सारे चीज रखा हुआ है घर है।